इसके अंदर बहुत सारी मेज रखी हुई है मेज के ऊपर जग रखा हुआ है गिलास रखा हुआ गिलास के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

ये एक बहोत बड़ी नहर दिखाई दे रही है जिसमें एक बच्चा खड़ा हुआ है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है एक लाइट की तार दिखाई दे रही है बाहर एक कार खड़ी हुई--

एक आदमी के हाथ में फोन दिखाई दे रहा है कांच के शीशे लगे हुए हैं दीवाल पर एक पंखा लगा हुआ है।

सीट रखी हुई है बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं पंखे लगे हुए हैं।

एक छत पर पानी की बोतल पड़ी हुई है। लोहे की बहुत सारी खिड़की दिखाई दे रही है।